और मुझे यहां तीन लड़के भी दिख रहा है।

और मुझे ऊपर कुछ पर्दा दिख रहा है जो अलग अलग रंग का है।

मुझे यहां एक सुंदर सा घर दिखाई मिल रहा है।

और मुझे आसमान भी साफ दिख रहा है।

मुझे यहां कुछ औरतें और मर्द दिख रहा है जो अलग अलग रंग का कपड़ा और पेंट पहना हुआ है।

और मुझे पीछे ऐ_सी भी दिख रहा है।

मुझे यहां पर कुछ सब्जियां दिखाई मिल रहा है।

और मुझे यहां येलो रंग का पर्दा भी दिखाई मिल रहा है।

और मुझे घर के पीछे कुछ पेड़ भी दिखाई मिल रहा हैं।

जो ब्ल्यू और व्हाइट रंग का है।

और मुझे यहां कुछ फेंसिंग भी दिख रहा है।

और मुझे यहाँ मौसम भी साफ दिख रहा है।

और मुझे एक घर भी दिखाई मिल रहा है।

और मुझे यहां दो चेयर भी दिखाई मिल रहा है जिसका ऊपर कपरा रखा हुआ है।

और मुझे एक पंखा भी दिख रहा है।

और मुझे यहां पर कुछ स्टूडेंट्स भी दिख रहा है।

और मुझे यहाँ कुछ धुंआ भी दिखाई मिल रहा है।

मुझे यहां एक लड़का दिख रहा है जो व्हाइट सर और ब्लू कलर का जीन पहना हुआ है।

और मुझे यहां कुछ सोलर प्लेट भी दिख रहा है।

और मुझे यहां दो तीन पहाड़ भी दिख रहा है।

और मुझे कुछ फेस वॉश और डेटॉल भी दिखाई मिल रहा है।

मुझे यहां एक सुंदर सा फील्ड दिख रहा है।

और मुझे मिट्टी भी दिख रहा है।

मुझे यहां छेह लड़के दिख रहा है।

मुझे यहा एक गाड़ी दिख रहा है।

और मुझे यहां पर कोकोनट पेड़ भी दिखाई मिल रहा है।

और मुझे कुछ प्लान घर के ऊपर भी दिख रहा है।